ये एक गार्डन है बहुत बड़ा झूले भी लगे हुए हैं बेंचे भी हैं।

मूर्ति कपल वाली है भगवान देव--

ये एक बहुत बड़ा हॉल सा लग रहा है एक आदमी खड़ा है टी_वी चल रही है।

धूप की रोशनी दिखाई दे रही है आगे कुछ लोग ढोलक से बजा रहे हैं लड़कियां डांस कर रही हैं कपल्स --

एक आदमी बाइक से उतरकर पैसे ले रहा है एक कपल्स पेट्रोल डलवा के--

एक डमी लहंगा पहने हुए बैठी हुई है।

पिंक कलर के पेड़ पौधे लगे हैं जो फूलों से सजे हुए हैं पिंक कलर के--

जाती हुई दिखाई दे रही है एक कार आती हुई दिखाई दे रही है।

हरी हरी घास है बहोत सारे पेड़ पौधे हैं।

ये एक स्कूल का फंक्शन है स्कूल का नाम--

एक लेडी पीछे बैठी हुई है चेयर्स पे--

ये एक डिस्को लग रहा है लड़कियां कुछ डांस कर रही हैं पीछे लड़के डी_जे पे डी_जे बजा रहे हैं।

बच्चे आपस में ग्रुप बना के खेल रहे हैं जमीन पर हरी घास रही है।

कपड़े से सजावट की गई है बहुत सारी चेयर्स रखी गई हैं जिस पर क्लॉथ चढ़े हुए हैं सुबह का--

ये एक पेट्रोल पंप है एच_पी पेट्रोल पंप --

लोग बा पेट्रोल भरवा रहे हैं साइड में एक टैंकर खड़ा हुआ है।

ये एक बहुत सारे पेड़ पौधा ही लग रहे हैं।

ये एक राजा भोज हवाई अड्डा भोपाल है।

काम चल रहा है आजू बाजू भी बहुत सारे पेड़ हैं।

शाम का वक्त हो रहा है आसमान आसमान में हल्के-हल्के बादल से है।